सफेद कलर का अंगूछा दाल के रख्या यहां पे मकान है उसके ऊपर मकान बना हुआ है उसमें सीढ़ी है।

एक ने नीले कलर की पहन रखी है और दूसरे ने गुलाबी कलर की पहन रखी है।

मेज है काउंटर है वो है सफेद कलर का कुर्सी का कलर काले कलर का मेज़ का कलर काले कलर का है।

इसपे एक चीट लगी हुई है उसपे लिखा है होटल प्रास ।

और दो आदमी हैं एक आदमी के हाथ में छिली है एक आदमी ऐसे ही खड़ा हुआ है लाइट चल रही है पंखे चल रहे हैं।

यहां पे खेत जोतने वाली बहोत सारी मशीन हैं उन पे लिखा है विकास।

एक ऑटो है उसका कलर है काला पीला सफेद उस पे एक आदमी बैठा हुआ है।

उन कुर्सियों पे कपड़ा पड़ा हुआ है काले और सफेद कलर का यहां पे बहुत सारी लाइटें लगी हुई है टेंट लगी हुई है।

उन नाव पे बहोत सारा कपड़ा पड़ा हुआ है आगे मिट्टी--

इन यात्रियों का कोई भी कलर नहीं दिख रहा है एक औरत जैसी है।

ऊपर सूरज है सूरज का कलर पीला है पानी का कलर काला--

यहाँ मिट्टी जैसे पहाड़ हैं पेड़ है एक नीचे से छोटा सा बंगला है वो है हॉल जैसा।

दो का सफेद है मोटर साइकिल का कलर काले कलर का है।

छोटी छोटी घास है वो है हरे कलर की एक पुल है।

और स्टैचू ने जींस पहन के रखि लोअर पहन के रखे हुए हैं।